तो कुछ गमन है तो कुछ छिछवा रही हैं कुछ उगा नहीं है तो --

तैयार हो जाओ हेयर कटिंग करवानी है तो।